जिनके हाथ मे बुक है यह हॉल पूरी तरह फूलों वह लड़ियो से सजा हुआ

--हाँ पर देखिए यह एक गार्डन का गेट है।